सामने एक लड़का कुर्सी में बैठा हुआ है मोबाइल देख रहा है एक लड़का पीछे खड़ा हुआ है मास्क लगाया है।

हमें एक हॉल दिख रही है हॉल में आ --

और लकड़ी का छारा हुआ दिख रहा है झोपड़ी मंदिर दिख रहा है।

दिवार दिख रहा है जिसमे नील कलर का पेंट पुता है | लाइट भी दिख रही है | पेड पौधे दिख रहे हैं |

सामने हमको फर्श दिख रहा है फर्श पे एक औरत बैठी हुई है बहुत सारी औरतें खड़ी हुई हैं।

दरवाजा दिख रहा है बगल में पेड़ दिख रहा है बादल दिख रहे हैं और --

यहाँ पे दुकान दिख रही है और दिवार दिख रही है दो खम्भे दिख रहे हैं जिसमें पोस्टर लगा हुआ है |

दिवार दिख रही है ईट की बनी हुई अअ निचे तीन अं ईट रखी हुइ है एक साइड चट्टान रखा हुआ।